और यहां पे टाइलें भी लगाई यहां पे शीशे के दरवाजे लगाए गए हैं।

सामने बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है यहां पे बहुत सारी तारें आ जा रही हैं।